खाना ट्राय करके एन्जॉय करते --

और उसका ग्राउंड जो मैदान है बहोत सुंदर लगा हु है।

बैंड बाजों के लिए बनाके तैयार की यै।

अ उसमें ओषधी वाले पेड़ भी लगे हुए हैं।

दिख रही हैं और उसमें बहोत सुंदर लाइटें लगी हुई हैं और जल रही हैं।

इस वीडियो में एक मंच दिख रहा है और उस मंच पर दूल्हा दुल्हन --

पहाड़ पर एक मम दो तीन चार कांच लगा हुवा है और --

और वह द दोनों नाई अपने --